और यहाँ पे बहुत सारे बाइक भी चल रहे हैं । ऊपर उ सारे गाड़ी आसमान एकदम साफ है ये।

यहाँ ज्यादातर घर जो है एकदम ही बने हुए है| इसका कलर ही ईंटे के कलर का और उधर बहुत सारे वाइट - वाइट घर है और चारो बगल से तालाब भी है| रोड --

यह एक रोड है यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही कीचड़ और यहां पे बहुत ज़्यादा ही पानी लगा हुआ है यहाँ एक लाइन से बस लगा हुआ है ये हर कलर का बस है ये व्हाइट रेड हर कलर का यहां --

यहाँ पे किसी का घर बन रहा है यहाँ पे बहुत सारे सामान हैं बालू गिट्टी और छड़ सीमेंट यहाँ उस साइड रेल है पटरी है वहाँ।

बहोत बड़ा सा स्कूल है और इसका कलर ग्रीन है और इसमें बहोत सारे गेट और खिड़कियां भी हैं और ये एकदम मस्त लग रहे है चारों बगल से पे यहाँ बैठने की पे बहोत सारे पोस्टर टाँगे हुए।